बाहर हमें एक बड़ा मैदान खाली मैदान मैदान दिख रहा है और कुछ वहाँ हमें पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं थोड़ा कलर में दिख रहे हैं हमें।

और पोस्टर दिख रहा है फैंस दिख रहा है यहा पर और मुझे वॉच दिख रही है यहा पर--

यहाँ पे हमे ग्रास्सेस दिख रहे है पीछे पेड़ पौधे हमे यहाँ दिख रहे हैं।

यहाँ पे हमे नैप दिख रहा है केम्रेस दिख रहे है।

प्लेट्स हमें यहां दिख रहा है और चेयर्स दिख रही हैं और परदे दिख रहैं हैं ।

जहा नीचे मुझे बहुत सारा पानी दिख रहा है ग्रासेज दिख रहा है।

तो मुझे बहुत सारी बसेस दिख रही हैं और कुछ स्टाल दिख रहे हैं छाते दिख रहे है वहाँ पे टिकट्स रेलवे अ बस टिकट्स के स्टाल दिख रहे हैं।